जिसमें आगे का बरामदा दिखाई दे रहा है बरामदे के नीचे कुर्सी पड़ी हुई है वो दिखाई दे रही है छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे--

यहां की बाईकें खड़ी हुई दिखाई दे रही है दो दुकानें दिखाई दे रही है एक कूलर पड़ा हुआ बंद जैसा वो दिखाई दे रहा है कचरा बॉक्स का डब्बा पड़ा वो दिखाई दे रहा पेड़ दिखाई दे बहुत अच्छा --

लश बहोत ही खूबसूरत और अच्छा दिखाई दे रहा है।

दृश्य में जो चित्र दिखाया गया है बहोत ही सुंदर और अच्छा देखने को मिल रहा है बहोत ही खूबसूरत दृश्य देखने को नसीब हो रहा है दृश्य में बहोत ही सुंदर --